यह एक बहुत सुंदर सा तालाब है जिसके चारों ओर पेड़ लगे हुए है तालाब के अंदर कुछ बतखें तैर रही हैं।

इसके पीछे बहुत सुंदर सा घर है और इसके दाएं और एक पिलर भी लगा हुआ है।

और बहुत अच्छा दिख रहा है।

पीछे की ओर घर बने हुए हैं और पास में ही खाली मैदान पड़ा हुआ है जो की बहुत सुंदर दिख रहा है।

यहां पर पूजा हो रही है। कई अन्य महिला पूजा कर रही हैं।

इसके ऊपर कपड़े डाल रखे हैं अऊर बहुत सारी पब्लिक भी है।

सामने एक औरत और एक आदमी खड़ा हुआ है आदमी के पास कपड़े लगे हुए हैं।

यह किसी बैंक्वेट हॉल का बहुत अच्छा सा गेट बना हुआ है जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है।

और इसमें लाइट भी लगी हुई है इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस पर कुछ पीले कलर में लिखा हुआ भी है।

पीछे की ओर कुछ पब्लिक खड़ी हुई है।

पीछे का मौसम नीले कलर का दिख रहा है।

टेबल के ऊपर कुछ पेन और कुछ अन्य सामान भी रखा हुआ है उससे पीछे लकड़ी की खिड़की है जिसके ऊपर पर्दे लगे हुए हैं।

पास में ही बाल्टी भी रखी हुई है एक छोटे गेट के अंदर कुर्सी भी है।

और सामने दीवार पर कुछ तस्वीर लगी है और एक शेटर का भी चमक रहा है।

और एक बोर्ड भी है जिसके अंदर चार्जर लगा हुआ है और एक सुंदर सा गेट भी है। स् --